मुझे यहाँ पर बस दिखाई दे रही है मुझे यहैं पर बस के अंदर ड्राईवर दिखाई दे रहा है मुझे --

मुझे यहाँ पर चट्टान दिखाई दे रही है थोड़ा बहोत उजाला भी दिखाई दे रहा है हया पर कुछ सफ़ेद-सफेद दूर-दूर दिखाई दे है।

मुझे यहाँ पर पंखे वैगरा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर टावर दिखाई दे रहा--

मुझे यहाँ पर बादल दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर कांच की खिड़कियाँ दिखाई दे रही है।

मुझे यहाँ पर लोहा दिखाई दे रहा है मुझे यहां पर फैक्ट्री दिखाई दे रही हैं ।

मुझे मशीन दिखायी दे रही हैं ।

मुझे यहाँ पर टंकी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर बल्ब दिखाई दे रहा है।

मुझे यहाँ पर बोहत सारे वाहन दिखाई दे रहे है मुझे यहां पर बिजली के खंबे दिख रहे हैं ।

मुझे यहां पर कुरसिया दिखाय दे रही है मुझे यहां पर टेबले दिखाई दे रही है ।

मुझे यहां पर गाय दिखाई दे रही है मुझे यहां पर रस्ता दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर आदमी दिखाय दे रहे है मुझे यहां पर सब्जी के ठेला दिखाई दे रहे है।